और यहां पे तीन से चार बाइक दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर दो देवतार के बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और तारे लगी हुई है। ये तारे चार से पांच--

आस पास कुछ खम्भे लगे हुए हैं ये खम्भे कम से कम बीस की तादात में है।

यह एक मोर है जिसे इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं।

जिनमें छोटे-छोटे मोर पंख लगे हुए हैं इन मोर पंख का कलर नीला--

रूम में एक बेड बेड लगा हुआ है जिसके ऊपर दो तकियां है।

यह एक रूम है जहां पर सोफे लगे हुए हैं सोफों पे चार से पांच तकिया है बीच में टेबल लगा हुआ है।

ये हैऊपर कुछ बोतलें हैं जो दवाएं लग रही है यह हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है साइड में कुछ लकीर-लकीर दिखाई दे रही है।

और ये ऊपर कुछ ए_टी_एम लिखा है।

यह एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जहां पे एच_आर_टी_सी बस लगी हुई है।

आस-पास कुछ गुलदिस्ते दिखाई दे रहे हैं।

यह एक होटल लग रहा है नीचे फर्श है यहां पे प्लाई लगी हुई है टेबल दिख रहे हैं चेयर दिख रही है।

साइड में झाड़ियां दिख रही है कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं बिल्डिंग का कलर पिंक कलर का है।

इनकी गिनती नही की जा सकती हैं ऊपर कुछ ब्रेड्स के पैकेट हैं।

रंग बिरंगे हैं कुछ नील हैं कुछ येलो है कुछ ग्रीन है।

नीचे हरे रंग का मैट बिछा हुआ है।

एक कांच भी दूर से दिखाई दे रहा है उस कांच में एक आदमी का चित्र सा दिख रहा है दीवार पर तस्वीरें टंगी हुई है गुलदस्ते हैं।

लगे हुए हैं गार्डन हरा भरा है।

एक ने हरा तो दोनों ने लाल एक ने नीली ड्रेस पहनी हुई है।

जिसमें बादल छाए हुए हैं यहां पर बहुत सारी कारें हैं।

चादर है चादर से पीछे कुछ जंगल दिखाई दे रहा है।

राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है।